इस चित्र में तिलपिया मछली नजर आ रही है जो कुछ पूरी है और कुछ आधी कटी हुई है।

कुछ लोगों ने ब्लू और कुछ लोगों ने फिरोजी कलर का टी शर्ट पहना है।

ये एक ग्रीन कलर के टूल पे रखी हुई है।

गेट के बाहर तीन लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं।

उसके आगे में बात से गेरा बना हुआ है और उसे पर ब्लैक और वाइट कलर का धारी बना हुआ है।

छत के साइड में लोहे की रेलिंग नजर आ रही है।

ये बार्बर की दुकान है अंदर में एक व्यक्ति फोन पे बात करता हुआ नजर आ रहा है।

दुकान के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और अंदर में एक व्यक्ति लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ है।

उसने ब्लैक कलर का कपड़ा कंधे पे ले रखा है।

इस चित्र में कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए दिखाया जा रहा है जहां पे एक बुलडोजर मशीन मिट्टी को एक गड्ढे से हटाते हुए दूसरी जगह पर रख रही है।

सामने बोरे पे कुछ सामान रखा है कार्टून में पीने का कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है।

ये नेक्सॉन कार शोरूम का चित्र है जहा पे लाल काले और सफेद रंग की कारे रखी हुई है।

यहां पे सफेद रंग का चार कुर्सी भी रखा है और उसके बीच में एक टेबल है।

कहीं कहीं पे बीच बीच में हरे हरे घास नजर आ रहे हैं।

उसके पास पानी के दो चार बोतल रखे हुए हैं।

स्कूल बस के बगल में एक घर है और उसके ऊपर से एक तार गुजर रहा है।

बाहर की तार में रंग बिरंगी लाइटें लटकी हुई है।

एक व्यक्ति ऑरेंज कलर का शर्ट पहना है उसके शर्ट पे लंबी पतली धारियां बनी हुई है।